इसमें कुछ डिफरेंट कलर में बोर्ड में कुछ लिखा हुआ--

उसमें काफी सारा मतलब बाथरूम साफ करने वाला रखा गया हैं दवाई वाई हैं कुछ हैं उसी तरह।

ईक दुकान है लगता है की रात हो गया है।

दो लेडीज है दो जेंट्स मतलब उठी मरद देता है।

लाइट लगा गया है।

इसका बाद बहुत सारा समान दिख रहा है।

थोड़ा सा खेब ऊपर खेब है खिड़की उड़कि मे लाइट नही लगा हुआ है।

दू तल्ला मे खिड़की मे लाइट लगा हुआ है नीचे में भी है नीचे मे एक बुलैट है।

मतलब पीछे में इसमें शीशा का लगा हुआ है खिरकी ।

अह ये वो जो वो जीन्स जूनस पहन के है वो उसके हाथ में कुछ उसी तरह कुप्पी उप्पी रखा हुआ है।

जिसके पीछे में बहुत सारा घास लगा हुआ है।

और पीछे में वे एम_सी_बी है।

इसमें एक गो बेल लगा हुआ है।

इसके बाद घर में आदमी लगभग है दो वो --

बहुत सारा लेडीज का कपड़ा भी दिखाई है।

एक टोपी भी रखा हुआ है।

अलमारी भी बहुत सारा है। सब रखा हुआ है।

अलमारी सा कुछ है।

काफी सारा मिठाई वागैरा रखा हुआ है।

उस पर ये आम भी है तरबूज भी है।

बहुत सारा खेत दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारा ही कही कही पानी दिख रहा है।

और इसमें बहुत सारे गाछ भी दिखाई दे रहे हैं।

उसमें भी बहुत कुछ आदमी भी है।

सारे मंदिर बहुत अच्छा है।

वो मगरमच्छ हैं जो लगता हैकी मर गया।

यहां बहुत सारा ग़म चिरक चिरक दिखाई दे रहा हैं पता नहीं बनाया होगा कुछ उसी तरह।